सीसे में लिखा हुआ है कुछ और कुछ व्यक्ति तीन चार अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं।

के बगल में एक व्यक्ति है जो चेयर पे बैठा हुआ है। जो ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है और टी सर्ट पहना हुआ।

यह रेड कलर का इयरफोन लगाया हुआ है गले में नेकबैंड ।

इस दृश्य में एक पोस्टर दिख रहा है जिसमें गोरी सारी लिखा हुआ है।

एक फेस वाश करने के लिए बेसिन लगा हुआ है ऊपर एक मिरर लगा हुआ है।

यहां भिन्न प्रकार के पेड़े रखे हुए हैं और एक गैस सिलेंडर रखा हुआ है।

यह एक जिम है जहां पे बहोत सारे व्यक्ति हैं।

सीढ़ी हैं जिसमे टाइल्स लगा हुआ हैं और उसका रेलिंग जो स्टील का घुमा हुआ--

पीछे एक ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा मंदिर है उसके बगल में तालाब है।

यह एक शॉप है जहाँ पे एक व्यक्ति सोफे पे बैठा हुआ है वाइट कलर और ब्लैक पेंट पहना हुआ है।

इस दृश्य में एक पाइप है ग्रीन कलर का।

जैसे टेबल चेयर बेंच ऐसे कुछ--

और एक घर है जो पिंक कलर का है।